मुझे एक शीशा दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे खंभे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहा है।